दूर तक खाली बादल वन दिखत हे गोट घर मन दिखत हे बद बाला मन दिखत हे लाली गोटा कुर्सी मन दिखत हे पोस्टर मन दिखत हे एगो आदमी काम करत हे गो --